और भी बहुत सारी इसके अंदर शॉप्स दिक्मे में--

वाइट कलर का शोकेज बना हुआ है कॉंच से--

व्हाइट कलर के पत्थर दिख रहे हैं और बहुत कुछ घास वगैरह भी--

यहाँ मुझे चर्च दिखाई दे रही है ऊपर नीले और वाइट कलर के फुग्गे और पिंक कलर के फुग्गे--

अ मतलब बैलून लग रहे हैं पूरा डेकोरेट हो रहा है बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है एक लाल कलर की पट्टी बिछी हुई है नीचे--

अ ग्रीन कलर की एक मेट बीछी हुई है और आगे एक बड़ा सा शोकेज बना हुआ है जिसमें प्लस का आइकॉन दिख रहा हैं।

यह चित्र किसी ऑफिस का नजर आ रहा है कांच का गेट दिख रहा है।

जीसमें वाइट कलर का और--

प्लास्टिक का कुछ दिख रहा है सामान नीचे दो कुर्सियाँ लगी हुई है दो से तीन कुर्सियाँ है प्लग है बिजली का बोर्ड हैं।

अं अह व्यक्ति खड़े हुए हैं कोई कोई साड़ी पहने हुए कोई जींस टॉप वगैरह कोर्ट सेट पहने हुआ है बहुत सी--

और और रंग बिरंगी छतरियाँ हैं हैं।

यहां पर दिख रही है एक छोटी सी दुकान है इस दुकान के अंदर बहुत काफी सामान भरा हुआ है ऊपर पेले छत है।

और पीछे लिखा है एक बोट है बेस्ट नंबर वन कॉफी यहाँ पर एक बिसलरी की अ बोतल रखी है दो कॉफी रखी है दो बाउल है जिसमें कुछ ये लोग खा रहे हैं पि रहे --

इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं या दुकान पूरी भरी हुई है ऊपर--

यह शाम है और मौसम बहोत ठंडा लग रहा है इसका--

और एक बड़ी सी लंबी सी टेबल रखी हुई है। दो छोटी कुर्सियां रखी हुई है लकड़ी से बनाई हुई।

या चित्र में मुझे एक योनो एस_बी_आई का अकाउंट दिख रहा है ए_टी_एम यहां पे काफी अंदर इसके अंदर है जो काफी पैसा निकाल रहे हैं कुछ निकाल रहे हैं कुछ ले रहे हैं।

अ इसमें तीन-चार व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं बाहर से कॉंच है ऊपर से शटर है और आसपास वाइट कलर का पेंट है।

इस चित्र में मुझे एक चर्च दिखाई दे रही है अ ईसा मसीह का फोटो लग रहा है मतलब वो मूर्ति बनी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक अ व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पेहन रखी नीचे जींस पेहन रखी है ग्रे कलर की--